साइड में रेत का टीला दिख रहा है।

सामने एक वायर का पोल दिख रहा है।

पीछे की ओर बहोत साडे पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर शटर में आरती बुक स्टोर लिखा गया है।

ये एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही है।

आगे बच्चों के खेलने की जगह दिख रही है।

पीछे कुछ संतरे भी रखे हुए हैं।

छोटा सा बैठने का जगह दिख रहा है।

बहोत सारे येलो फूल दिख रहे हैं।

दो घर दिख रहे है।

कुछ लोग दिख रहे है बस के अंदर।

पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

बहोत सारे लोग बैठे हुए खड़े हुए दिख रहे हैं।

पीछे एक घर दिख रहा है।

आगे एक मशीन दिख रहा है।

दो बच्चे नाच रहे हैं।

पीछे कुछ टेबल्स दिख रहे हैं और चेयर दिख रही है।

साइड में एक आदमी पानी में हाथ धो रहा है।

पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है।

नीचे गंदगी दिख रही है।

राइट में ग्रीन कलर की वॉल दिख रही है।

और ऊपर बहोत सारे तार दिख रहे हैं।

आदमी झुक कर गाड़ी ठीक कर रहा है।

गाड़ी के इंजन के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है।

धूप ढलने का समय हो रहा है।

सारे लोग टू व्हीलर में बैठे हुए हैं।